कुर्सी दिख रही है बाहर भी एक टेबल हमे रखी हुई दिखाई दे रही है।

पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और हमें बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं साइड में हमें हरियाली दिखाई दे रही है खम्बा लगा हुआ दिख रहा है ग्राउंड में भी हमें --

एक छोटी लड़की भी दिख रही है जो बोतल टंगे हुए है चार-पांच आदमी दिखाई दे रहे हैं एक बड़ी लड़की दिखाई दे रही है जो --

हमें यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है जो कि बहुत लंबी है और पुराने जमाने की है खंडर टाइप की।

व्हाइट कलर का गजरा लगा हुए है कुर्सी है और बहोत सुंदर लग रहे है।

और हमें गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है रैलिंग टाइप का और अब बीच अंदर हमें एक नेट दिख रही है ग्रीन कलर की।

बोहोत सारी दुकानें दिख रही हैं बोहोत सारे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें --

डाल रहा है और हमें यहाँ बहुत सारे पेड़े लगे हुए दिखाई --

नीचे हमें ऑरेंज कलर की मेट बिछी हुई दिख रही है।